यो एक खेलन का ग्राउंड है जो बीच में से पक्का हो रहा है। एक लड़का--

लोहे के पाइप वगैरा कुछ उतरन चडन का बना रखा है एक डस्टबिन सा पीले रंग का बच्चे टैटु है टाइप में--

अंदर एक सरिए पड़े हैं पीछे गेरे गेरे पो पौधे है।

स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस लिख रखा है एक लुगाई खड़ी है एक ने मास्क लगा रखा है छाप रखी--

और शो वगैरा दिखाई दे रही है इसक्रीम की रेडी है।

बीच में बंन रहा है पैड़ी बन रही है उसमें तीन--

एक सी अ वो है वो वोड मशीन धरी हैं जिसपे --

ये बहुत सारी मिट्टी है मिट्टी के ऊपर एक गाडी है जिसमें नंबर प्लेट लगी हुई टायर हैं।

इलाका है जिसमें बहुत सारी लेडीजे हैं दुपट्टा सर पे रख रखी हैं आदमी है उसको देख रहे हैं जिसमें जाली में कई के डिजाइन हैं।

एक ब्लू कलर के ऊपर जैकेट है। एक संतरे के लिए फुल की काट के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है।

और व्हाइट दिखा है निचे लाल रंग का कुछ बिछा रखा है जिस स्टैंड पे खड़े हैं।

तस्वीर छप री इसी माना साइकिल खड़ी है रोड है।